फलो में अंगूर सेव अनार केला तरबूज़--

टावर के पीछे पेड़ भी दिख रहे है।

एक टेबल पर बुके भी रखी हुई दिख रही है। बहुत सारे बलब दिख रहे है।

आसमान भी दिख रहा है फैक्ट्री में वायर भी पड़े हैं।

मूर्ती के पास पौधे लगे दिख रहे है मूर्ती के पास जाली भी दिख रही है।

जिसके बाहर सेण्ट_फ्रांसेस_किड्स_वर्ल्ड नाम का बोर्ड लगा दिख रहा है।